जिसके ऊपर व्हाइट और रेड कलर की डिजाइन वाली चादर दो पिलो दिख रहे हैं।

साथ में एक कंप्यूटर जो कि यहा हमें व्हाइट कलर का लगा हुआ दिखाई दे रहा है।